यहां पे हमें कुछ टीन भी दिखाई दे रहे है और पूरे में प्लेटफॉर्म बना हुआ है।

इस चित्र में हमे एक्सेस बैंक का एटीएम लगा दिखाई दे--

पुरे में हमे दिवार दिखाई दे रही है और एक ऐसी की भी--

यहाँ पर कुछ चेयरे और बेंचे भी रखी हुई है यहाँ पर एक बेंच रखी है जहाँ पर एक जो है मु जीटू मिला हुआ है उसमे एक--

अ ग्लास में एक पाइप भी लगा है यह लाल रंग का है और इसमें निम्बू पड़े हुए है।

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे पुरे में--

इस चित्र में हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियाँ--

और चेयरे रखी हुई है यहाँ पर जो लेब है इसके अंदर बहोत सारा सामान भी रखा हुआ है और लेब टेस्टिंग के लिए कुछ चीजे भी रखी हुई है।

यहाँ पर हमे ब्लू और वाईट कलर के कब्र्ट्स भी दिखाई दे रहे है और स्विचेस भी लगे दिखाई दे रहे है।

और ये जो बैंक है इसके उपर हमे ये पूरा जो है बैनर पे लगा दिखाई देरा--

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जिसमे कुछ लाइटे लगी हुई है और सामने हमे बोहोत सारी डेकोरेशन लगी दिखाई दे रही--

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जहा पे बच्चो के लिए टॉयज रखे हुए है।

बोहोत सारे बच्चे बेठे हुए है बच्चो के पास कुछ पेपर्स है और सामने कुछ बॉक्सेस भी रखे हुए--

इस चित्र में हमे एक बेकरी दिखाई दे रही है जिसमे बोहोत सारे अलग अलग तरीके के केक रखे हुए हैं कुछ पाइनेपल केक हैं तो कुछ चॉकलेट केक --

और चोकलेटी कलर के और इन्हें देक के बोहोत ही अच्छी स्वीटनेस आ रही है।

भगुनिया भी रखी दिखाई दे रही है और कुछ डीशेस भी यहाँ पे एक चेयर भी रखी हुई है और एक कॉपी यहाँ पे रखी हुई है।

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जहा पे एक ट्रक खड़ा हुआ है उसपे लिखा है टा--

इस चित्र में हमे एक घर दिखाई देरा है जिसमे कुछ बास लगे हुए है ये जो घर है--

इसके साइड में हम देखे तो यहाँ पे एक रेलगाड़ी भी जा रही है।

उपर हमे साइड में इसके अ एक पूरा स्टेशन के जो है कम्पाटमेंट्स यहाँ पे बने हुए है वो बने दिखाई देरे है और कुछ चेरे --

गमले में पेड़ कुछ निचे ही अ मिट्टी में पेड़ लगे दिखाई दे--

इस चित्र में एक प्लेट है और इस प्लेट के अन्दर रखा है ट्राईगुलर शेप में पा--

पराठे जो है वो तिन चार है शायद ये आलू का पराठा है मेथी का वो नही आरा समझ--

अ घास लगी हुई है और उसके साइड में पीछे हम देखे तो एक होटल बना हुआ है और उसके सामने एक कार खड़ी हुई--

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है और सामने इसपे एक स्टार बना हुआ है स्टार शेप में एक मूर्ति जो है वो बनी दिखाई दे रही है।

सामने इसके एक बच्चा खड़ा है जो अपनी फोटो खिचवा रा है ये जो अ और इसके पीछे कुछ पथरो का भी डेकोरेशन हमे--

उपर हमे इसके टिन लगे दिखाई दे रहे है और सामने हमे--

यहाँ पे बोहोत सारी जो है चेरे लगी हुई है मतलब बनी हुई जो सीमेंट की होती है वो यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे जो है वो लोग बेठे हुए दिखाई दे रहे --

और इसके अन्दर जो है लिखा हुआ हंड्रेड परसेंट नेचुरल आइस क्रीम शेक्स अंड संडीस और सामने कुछ गमले भी लगे दिखाई दे रहे है और कुछ लोग हमे यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे कुछ पेड़ हमे बड़ा सा एक बड़ा सा पेड़ हमे लगा दिखाई दे रहा है और सामने जो है घास लगी हुई है और वो कटी हुई घास है जिसको काट के अच्छे से--

डिजाईन किया हुआ है बिच में से यहाँ से एक रोड गया हुआ है और यहाँ पे लिखा है।

एक आदमी यहाँ से गुज़र के जारा है और सामने कुछ हमे टाइल्स लगे दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं अलग अलग ग्रुप बनाके--

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जिसपे लिखा है फ़ूड ट्रे--

मतलब यहाँ पे फ़ूड मिलता होगा और सामने जो है हमे एक ऑटो जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक बाईक खड़ी दिखाई दे रही है कुछ आदमी औरत यहां निकल के जा रहे हैं ऊपर हमे बाल्कनी भी दिखाई दे रही हैं और यहां पे एक हमे सूखा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जहा पे बोहोत सारे जो है डीज़ल पेट्रोल की बोटले जो है बड़ी हुई अच्छे अच्छे अ कोप्ते में रखी हुई है।

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जहा पे बोहोत सारी चेयरे रखी हुई है।

कुछ लोग यहाँ पे चेयरो पे बेठे हुए है और पीछे भी हमे बेठे दिखाई दे रहे--

पीछे यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हुए है कुछ ओरते आदमी यहाँ पे बेठे हुए है निचे घास लगी हुई है।

इस चित्र में हमे एक होटल दिखाई दे रहा है और उस होटल में हमे यहाँ पे गैस लगा हुआ दिखाई दे--

यहाँ पे जो है एक जगा बनी हुई है जिसमे तिन चार लोग खड़े हुए है यहाँ पे सोस भी रखा है नूडल्स वुडल्स बनते होंगे--

इस चित्र में हमे एक शादी दिखाई दे रही है जहा पे पुरे घर बने हुए है और उनमे कुछ लाइटे लगी हुई है यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हुए है और फुब्बारे यहाँ पे जल रहे है।

इस चित्र में हमे एक मॉल दिखाई दे रहा है इस मॉल में बोहोत सारी चीज़े रखी हुई है उपर हमे कुछ बलून लगे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे जो बलून है वो अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे है यहाँ पे बोहोत सारी चीजे भी हमे--

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है जहा पे पत्थर है और उपर भी एक पत्थर बोहोत ही बड़ा है जिस मेसे पानी निचे आ रहा है।

उपर हमे कुछ पेड़ लगे दिखाई दे रहे है कुछ पपत्तिया या और पेड़ हमे यहाँ पे बोहोत सारे लगे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे दो अंटिया और तिन आदमी खड़े है और वो अपनी फोटो ले रहे है।

पीछे हमे कुछ फुल भी लगे दिखाई दे रहे है उपर पीछे भी इसके कुछ फुल लगे हुए है उपर यहाँ पे डेकोरेशन भी अच्छा किया हुआ है।

उपर हमे गेंदे के अलग अलग रंग के फुल लगे दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में हमे एक जगह दिखाई दे रही है और ये शादी की जगह है।

यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा हुआ है और वो अपनी फोटो खिचवा रहा है।

यहाँ पे कुछ गमले लगे हुए है और उन गमलो में पेड़ लगे हुए है।

कुछ बच्चे पीछे भी है और कुछ बच्चे आगे भी है कुछ आ बच्चे जो है--

खेल रहे है कुछ बच्चे आगे आ रहे है लाइनों से ये बच्चे आगे बड रहे--